यहां पर चारों तरफ कुर्सियां और मेजेज रखे हुए है अन्यथा बहोत से लोग वहां पर बैठे हुए हैं और उधर कुछ लोग टहलते हैं और नीचे जाते हुए देखे जा सकते--

यह एक शादी का व्यू है।

यह एक कंस्ट्रक्शन के साइड का व्यू है यहां--

बहुत से वर्कर मिट्टी अह सॉरी गिट्टी ढो रहे ढो रहे हैं यहां पर--

एक सिक्योरिटी गार्ड है जो ब्लैक कलर का यूनिफार्म पहन के आ रहा है और उधर वाला कुछ खाने पीने के सामान मिल रहे हैं।

चारों तरफ लाइट ही लाइट है और वहां कुछ बैठने वाला रखा गया है।

यहां पर चारों ओर पेड़ पौधे और घास लगे हुए हैं और फूलों के इधर वाले टाइल्स लगी हुई है और ये फूल काफी सुंदर है।

और यहां पर बैठने की काफी सुवधा उपलब्ध है।

यह एक योगासन क्लास है।

यहां पर ट्रेन की पटरियां भी हैं और ये दिन का माहौल है।

उधर वॉल ब्वॉयज का और इधर वॉल गर्ल्स का। ये कुछ बना रहे हैं किसी टाइप का कुछ।

और यहां पर बहोत तरीको के पौधे और फूल्स मिलते हैं।

और काफी अच्छा लग रहा है।

अन्यथा अंदर मेज पड़ी है। यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं अन्यथा यहां पर तीन गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

बारिश होने के कारण रोड गीली है और यहां पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

उसके बगल एल_सी_डी भी लगी है।

और यहां पर तरह तरह के केक मिठाइयां भी मिलती हैं और वहां पर एक कुलर रखा हुआ है।

अन्यथा अंदर भी कुछ लोग बहुत से लोग बैठे हुए हैं और काफी सुंदर व्यू है।

ऊपर बेल्स लगे हुए हैं और उधर पंखा चल रहा है।

यह किसी तरीके का रेजिमेंट का सेंबल है।

फूलों से डेकोरेशन किया गया और भी बहुत कुछ--

चार चादर है ज जो बहुत अच्छी है और यहां पर ऐ_सी लगा पड़ा है।